यह एकअ खालीअ रोलर वाला मैदान नजर आ रहा है।

यह किसी अ सरकारी स्कूल का न नजारा लग रहा है इसे देखकर लग रहा है कि यह गवर्नमेंट स्कूल है बाहर--

यह कार का नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर ब्लैक कलर की--

ऐसा लग रहा है कि यह थिएटर के अंदर का नजारा है या फिर किसी रेस्टोरेंट का नजारा है यहां पर लोग कपल्स स्पेशली कपल्स यहां पर--